गुलाबी रंग बोतले हैं और इसके दरवाजे पे स्टीकर का चिपकाया गया है। इसमें कई तरह की फोटो बनी हुई है।

पूल बनी हुई है। उस पूल पे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहें है जिसमे से कुछ लोग नदी मे नहाते हुए भी दिखाई दे रहें हैं। नदी से कुछ ही दूरी से कुछ हरे भरे --

पेड़ पौधे और कुछ मिटयां भी दिखाई दे रही है जिसमें --

सलून की दीवारों पे दोनों ओर ऐनक लगाया गया है।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक बैंक दिखाई दे रहा है। इस बैंक के बाहर दो बाइक खड़ी हैं और उसे कुछी दूरी पे --

यह मशीन स्पीड मापने वाली मशीन है और इस मशीन के ऊपर एक बोर्ड लगी हुई है जो कि अस्पीड बता रहे है।

इस पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी तेल लेते हुए दिखाई दे रही है जिसे पेट्रोल पंप की ऊपर --

एक सफेद रंग की पैकेट को रखा गया है और पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पे एक सफेद रंग की घर भी बनी हुई है और इस पेट्रोल पंप पर घ् --

ब्लू रंग की गेट बनी हुई और विद्यालय से कुछ ही दूरी पे दो गाड़ियां खड़ी हैं।

फल दुकान पे बोहोत सारी फलों को कैरेट के ऊपर रखा गया है जिसमें सेब केला अनार नींबू और --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक चिड़ियाखाना दिखाई दे रहा है इस चिड़ियाखाना के अंदर कई प्रकार की --

अ डुप्लीकेट के ऊपर भी लगाया गया है। इस दुकान मे दो काले रंग की कुर्सियाँ दिखाई दे रहीं हैं। इस कपड़े की दुकान मे कई प्रकार के कप --

यह एक मार्केट है और इस मार्केट के अंदर कई सारी दुकानें दिखाई दे रही है। इसमें एक दुकान कय् ऊपर एक बोर्ड लगी हुई --

वो बाहर रखा गया है जिसमे एक सब्ज़ी कद्दू दिखाई दे रहा है और कुछ सब्ज़ी को बोरे के अंदर रखा --

और डॉक्टर पारुल गुप्ता लिखा हु --

मस्जिद भी दिखाई दे रहा है। मस्जिद के ऊपर एक पतली सी गुंबज को बनाया गया --

गुंबज का रंग सफेद और हरा है जिसमे कुछ --

उसके ऊपर कुछ बहुत सारी माला को लखा गया है और कुछ बर्तने --